जैसे भी गोभी वगैरा टमाटर वगैरा गाजर --

के सामने बैठा हुआ सक्स कुछ हैप्पी बर्थडे के लिए--

कलर है जो ग्रीन कलर वाइट कलर --

ग्राउंड में खड़े भी हुए हैं ये तरह तरह के कपड़े पहने हुए हैं पीछे हमें व्हाइट कलर की--

पर बैठा हुआ है कुछ लाइटें भी--

ग्राउंड में कुछ मेहनत करने के लि--

गड़े हुए है और पोल है जो ग्रीन कलर के है और जो पारक की--

दुकानें दिखाई दे रही हैं दुका--

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं झील के पास से हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है आसमान--

किवी भी चीज को ठीक कर रहा है और यहां पे नीचे फर्श है जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा है।

रेड कलर की येलो कलर की--

दिखाई दे रहा है और इसपे भगवान कन्हैया जी की फोटो भी--

एम_टी कॉलेज ऑफ़ एजुके--

पर यहां पे एक लोहे का गेट --

मेरे सामने एक --

यहां पर कुछ डंबल कुछ मशीनें लगी हुई दिखाई दे रही है।

और उसके साथ कुछ पोल वगैरह भी लगे हुए हैं।

है मंदिर के सामने एक आदमी खड़ा हुआ--

एक घर सा दिखाई दे रहा है घर में--

एक लोहे की मेथ्सी सी लगा रखी है और एक मशीन भी काटने वाली--